यह कोई स्कूल या इनर कॉलेज की बिल्डिंग है जोकि लाल रंग की है और इसके जो खुला मैदान है वह थोड़ा हरा भरा है लेकिन यहां बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं।

और इसके पीछे यहाँ से हल्की-हल्की रोड भी है और आसमान भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

यहाॅं नीचे एक खुला मैदान है। जहाँ पर कि सड़के बिछी हुई हैं और एक पेट्रोल पम्प भी है जहाॅं पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं।

डैम को खोल दिया गया है और इसमें से पानी भरभर के निकल रहा है और ये पानी काफ़ी गन्दा दिखाई दे रहा है क्यूंकि ये ब्राउन रंग का है।

यह कार्डियो करने के लिए एक रुन्निंग मशीन है जिसमें की हम टाइम और स्पीड लगा कर के इस पर दौड़ सकते हैं।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है। जहाँ पर की हमारी पढाई से जुड़ी सारी चीजे मिलती है जैसे हाइलाइटर हो गया मार्कर --